पीछे पहाड़ है जिस पर हरे पेड़ लगे हुए हैं छोटे-छोटे।

और एक में भगवा कलर का पेंट भी है प्लेग्राउंड में कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

ये एक आर.डी. पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग है। जो की व्हाइट कलर की है। तीन फ्लोर है। पीछे भी एक बड़ी मल्टी दिख रही है।

फ्रंट दीवाल पर एल.सी.डी. भी लगी हुई है ऊपर भी एक फेन है।

बाहर आए है और पीछे खजूर के बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है। स्विमिंग पूल मे --

यह एक मंदिर का सीन है जिसमे --

जीन्स ब्लू पहन रखा है उसके हाथ में एक मोबाइल भी है।